यहां पर ग्रीन कलर की कुछ घासे लगी हुई है कुछ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारी गाड़ियां लगी हुई है बहोत सारे लोग हैं जोकी खरे हैं बहुत सारे लोग जोकी बैंक के तरफ जा रहे हैं।

और वाइट कलर के फ्लावर से डेकोरेट किया गया है बगल में एक ग्रीन कलर की घास भी है।